कुछ दवाइयां रखी हुई हैं और कुछ यहां पर एक कुर्सी है।

और नीचे भी कुछ बॉक्स में रखा हुआ है काउंटर में।

और बराबर में थोड़ी बैग स्टूल है।

निचे दिख रहा है निचे एक है सारे में--

ब्लैक टायर दिख रहा है।

ऊपर बैनर लगा हुआ है।

एक गाड़ी खड़ी हुई है लोहे का गेट लगा हुआ है।

यहां पर स्टील के गाटर लगे हुए हैं।

सामने कुछ मकाने दिख रहे हैं।

और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है नाव पर।

हरे रंग की दीवाल सजी हुई है।

एक बहोत बड़ी मेज रखी हुआ है एक कट्टा रखा हुआ है।

एक सामने बैनर है और कुछ बराबर में डिब्बा रखा हुआ है।

सारी साइकिलें खड़ी हुई है एक लाल सा पोस्टर लगा हुआ है।

और सब के हाथ में कुछ डंडे हैं नाव चलाने के--

जो ऊपर टंगे हुए हैं और लाइटें जली हुई हैं।

यहां बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं लेडीज है कपड़े।

एक पेपर रखा हुआ है। बोहोत सारे आदमी हैं यहां। बोहोत सारे लाइट लगे हुए हैं।

और ये एक बहुत बड़ी माला है और कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

और गेट हैं यहां पर दो तीन मेन --

और परे भी गाड़ी खड़ी हुई है।

सामने एक मेंन गेट हैं।

व्यक्ति के हाथ में कुछ है।